सभी सामग्री मिलती है। यहाँ पर फेशियल की सभी सामग्रीया मिलती हैं।

इसमें मरम्मत कर रहा है। यहाँ एक डब्बा लेकर इसपे कुछ लिखा हुआ है व इससे इसे ड्रिलिंग कर रहा है।

पाइनएप्पल आदि सभी चीजें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ के फल की स्वाद बहोत ही मीठी होती है।

ई ग्लास भी लगाई गई है और ये रूम बहोत ही अच्छी तरह से डेकोरेट भी की गयी है और उसमे एक फैन भी लगाया गया है।

बास की बनाई गई है। ये कुर्सी बोहोत अच्छी तरह से बनाई गयी है। यह कुर्सी बॉस की है और इसके बॉर्डर में ब्राउन रंग का --

और अच्छी से अच्छी इलाज की जाती है और किमायती दाम पर की जाती है इलाज।

शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई है और सर पर गमछी लपेटा हुआ है।

ये एक चमत्कारी मंदिर है यहाँ पर जो भी पूजा करने आता है --

उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है आज यहाँ बहुत ही भीड़ होती है

और इनके खाने के लिए चारो ओर नीम के पेड़ और अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं।

और ये वर्ल्ड मैंप का भी दीवाल पर ट्रेनिंग भी लिखी गई है और एक पावर बोर्ड भी लगी हुई है। यह दीवार नीले रंग की है।

अ जाँच पड़ताल करते है इस अस्पताल का नाम जनता अस्पताल है यह अस्पताल सभी जनता के लिए --

टी कॉफी चाय पानी सभी चीज़े मिलती हैं यहां पर लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं।

और यहाँ पर ज़मीन में पूरी तरह पानी ही पानी है और सभी लोग आराम से रोड क्रॉस कर रहे हैं और वर्षा से बचे हैं। एं --

हैं और लड़की को दे रहे हैं गिफ्ट --

रसगुल्ला आदि सभी चीज यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ की मिठाइयां बोहोत ही टेस्टी होती हैं।

गॉड्स भी बनते हैं यहाँ सभी लोग सुबह-सुबह आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं।